इसके पीछे बहुत बड़ी बिल्डिग है साथ ही कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े दिन का समय है |

स्टेज है इसकी सजावट हुई वी है कुछ गमले लगे हुए है पौधों के।

बेडशीट वाइट है | कम्बल रेड है | वाल पे दो सीनरी लगी हुई हैं | लाइट जली हुई है |

काफी बड़ा मैदान है जिसमे कुछ घास हो रही है |

गमला है उसमें पौधा हो रहा है।

कुत्ते को ग्लूकोज भी लगा रखा है नीचे इंजेक्शन्स पड़े हैं।